ऊपर नीला कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।

एक कार लगा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर हम लोगो को नीली कलर का आसमान दिखाई दे रहा है देखने में बोहत अच्छा लग रहा है।

जवार है यहाँ एक लड़का भी दिखाई दे रहा है हैं।

और हरी घास लगी हुई है और ऐसा वैसा इस वीडियो में दिखाई दे रही है।

चारो तरफ सफाई दिखाई दे रही है इसमें ऊपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है ।

ये देखने में बहुत अच्छा सूंदर नजारा लग रहा है और यहाँ पर पुरे में पानी भरा हुआ है।